और ये चोटे लगती हैं कई लोगों की इसमे गड़ियाँ बहोत तेज भगाई जाती है लोगों द्वारा।

हिरण भी दिखाई दे रहें हैं जो की बहुत सुंदर हैं। इन हिरणों को शेर खाते हैं शेर इनके पीछे पड़ते हैं भाग-भाग के ये मारते हैं ये घास कहा रहें हैं देखिए इन्हें।

लोग घूम रहे हैं मजा कर रहे हैं ओर कपड़े भी खरीद रहे हैं मेले मे चर्खियों मे बेठने मे बहुत ही मजा आती है।